हरे रंग का एक कालीन बिछा हुआ है।

मस्जिद की है जिस पर काला और--

जिस पर काफी सारी बड़ी सफेद रंग की गाड़ियां खड़ी हैं।

जिसमें बैठने के लिए कुर्सी और टेबलें रखी हुई हैं।

ये पेट्रोल पंप खाली पड़ा है।

और एक बड़ा सा दरवाजा है।

बीच में एक बड़ा सा पेड़ लगा है।

बड़ी सारी सफेद और काले रंग की गेंद है।

आसपास हरा पहाड़ है।

जिसमें घर भी बने हुए हैं।

और पंखे भी लगे हैं--

सफेद रंग की छत है उस पर पाइप लगे हुए हैं।

जिस पर लोहे की छड़ डली है।

एक हरे पन्नी पर बैठे हुए हैं .]

इस तस्वीर में एक आदमी हाथ में कटोरी लिया हुआ है।

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है।

गोल-गोल क्यारियों में पानी भरा हुआ है।

शेड के नीचे बहुत सारे बड़े-बड़े--

यह एक कपड़ों का शोरूम है।

यहां पर एक सुनसान सी सड़क है।

यह एक सड़क की तस्वीर है।

कपड़ों बहुत ही रंग बिरंगे और खूबसूरत हैं।

उस पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

बहुत से लोग सफेद कपड़े पहने खड़े हैं।

यहां पर बहुत सारी काले रंग की गाड़ियां खड़ी है।

इस सफेद रंग की दीवार से टेक लगाकर खड़ी हैं।

और पास में एक तालाब भी दिख रहा है।

जिसमें टेबल और कुर्सियां लगी हुई हैं।